और बहुत अच्छा लग रहा है सब अच्छा लग रहा है बिल्डिंग देखने में बहुत सुन्दर बिल्डिंग है बहुत खुबसूरत बिल्डिंग है आ --

वा बहुत अच्छा लग रहा है बहुत-- .

साइकिल भी लगल है ढेर सारा मोटर साइकिल से एक आदमी भी है और बगल में फुल है बहुत सुंदर पेड़ है।

सुंदर लग रहा है पहाड़ के ऊपर से पानी गिरा है दो लड़का नहा रहे है बहुत सुंदर है गंदगी भी है ज्यादा--

बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कितना सुंदर लग रहा है क्यूट लग रहा है बहुत ही मस्त लग रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है।